तीन मंजिला घर हो गाड़ी लगल हो।

इधर टेबूल उबुल बैठे वैला हो इस्पीकर हो गाना बजबे बला।

इस शौच के अंदर एक के हउ के हउ | गेट लगल हउ मैन गेट भी अंदर वाला ग्रिल भी लगल हउ ।

चारो ओर से घेरल हो लाल कलर और पीला कलर के दीवाल हो रंगल हॉस्पिटल हो केंद्र स्वच्छ केंद्र है।

प्रियांशु मेडिको और फूल पट्टी लागलु उद्द्घाटन लागु हॉल इधर हाल में अभी तो कुछ नज़र न आये ओकर वगैरह--

अगल बगल गाछ और बादल वाइट हो इधरे से गेट खुलल चारों बगल हो | इधरे जहाँ से --